एक तिरंगा दिखाई दे रहा है एक बल्ब दिखाई दे रहा है दीवाल पर एक बैनर सा लगा है उसमें कुछ लिखा हुआ है।

उसकी बहुत सारी खिड़किया दिखाई दे रही है मंदिर के ऊपर झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में एक गेट लगा हुआ है दो नल लगे हुए है सामने कांच लगे हुए है पंखे लगे हुए है टेबल कुर्सी जमी हुई दिखाई दे रही है टेबल पर नमक की डीबी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड मे हरी हरी घास दिखाई दे रही है दो लैम्प लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बल्ब दिखाई दे रहा है एक लड़की एक आदमी दिखाई दे रहा है।